पीले पीले लाल लाल हरे हरे कलर के फूल रखे हुए है यहां पी भीड़ भिड़ाइया गाडिया रखी हुई है और यहां बिल्डिंग बिल्डिंग भी बनी हुई है।

यह एक पुराना सा खंडहर सा मंदिर दिख रहा है और यहाँ पर चारों तरफ पेड़ भी लगे हुए है।